फोटो में एक मकान दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही हैं।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

फोटो में एक पोएट्री फॉर्म दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

फोटो में ढोल दिखाई दे रहे है।

दे रहा है उस रेस्टोरेंट में--